नीचे एंट्री गेट है आजू बाजू गमले रखें हुए हैं जो की अच्छे लग रहें हैं।

बाजू में भी बाजू में भी कोई हॉस्पिटल जैसा कुछ दिख रहा है और यहां पे ऑटो कंसलटेंसी का भी है।

इस इमेज मे वलसाड के राजहंस सिनेमा है जिसमें की देख सकते है कोई मूवी लगी हुई है बहोत पब्लिक आई हुई पिक्चर देखने--

और बीच में इधर पानी का जमा हुआ है छोटा सा तालाब दिख रहा है और एक बाइक खड़ी हुई एफ_जेड वाली बाइक है और उधर एक मशीन भी रखी हुई है।

और उनके खेलने के लिए बहोत सारी सुविधाएं हैं एक बच्चा इधर दिवाल के पास खड़ा हुआ है।

आजू बाजू हरा भरा पौधा है और दो गुफा है दिखाई दे रही हमें छोटी छोटी अंदर जाके दोनों मिल भी रही है।

यह इमेज एक प्रकृति नेचर का है जिसमें की एक बीच में मैदान फिल्ड़ है जहाँ पर खेती करते हुए लोग हमें दिखाई दे रहे--

यह इमेज में हम देख सकते हैं कि यह धार्मिक इमेज है कोई रथ जा रही है।

और पीछे और भी एक ब्लू टी शर्ट में लड़का है जो जिम कर रहा है और काफी कई सारे मशीन से मशीन रखी है जिम की और डबल्स भी रखे हुए हैं।

ये ईसाई धर्म के हो सकते हैं जोकि शादी के लिए जा रहे हैं पीछे हम लड़के भी देख सकते हैं।